घर के पीछे हमें एक पेड़ दिख रहा है बहोत बड़ा सा और इसमें हमें कपरे दिख रहे हैं छोटे छोटे से।

बाउंड्री की चारों तरफ से हमें छोटे छोटे पेड़ दिख रहे--

साइड से ब्लू कलर की बाउंड्री लगी हुई है और ऊपर से बिजली का तार गया हुआ--

तीन पिलर लगे हुए हैं और इसमें दो आदमी हैं जो कि काम कर रहे हैं।

एक आदमी आरती कर रहा है और पीछे एक ए_सी लगा हुआ है।

इसमें लिखा हुआ है आकाश मोबाइल कम्युनिकेशन एंड जन सेवा केंद्र।

एक गाड़ी खड़ी हुई है और एक जनरेटर भी है।

अंदर एक व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ--

ब्लैक कलर की चेयर लगी हुई है और एक खिड़की है।